और सलून का नाम है नाइन एक्स हेयर सलून ।

दो-तीन अगल-बगल में बोर्ड है और न्-साइड में एक के नीले कलर का मोड भी है।

वेलकम लिखा हुआ है द स्मार्ट वर्कशॉप की दुकान है।

और पंखे भी हैं बहोत सारे रखे हैं। नीचे जमीन गंदी भी बहोत लग रही है और लाइट भी आ रही पीछे से।

और पीछे एक आंटी जी भी खड़ी हैं और एक लड़का भी है। पीछे मस्जिद टाइप का भी बना है।

पूरे में हरा-भरा पेड़ लगा हुआ है और जाने के रास्ते में भी ऊपर से जाली लगा के पेड़ लगा हुआ है।

यहाँ पर पतंजलि का पोस्टर लगा है और गिफ्ट का पोस्टर लगा है उसमें गुड्डा बना हुआ है।

पंखे लगे हुए हैं और दो कलर के गुब्बारे हैं। एक पीला है और एक काला है और नीचे सब बहोत सारी बोतले हैं।

और छत पर एक टोर्च है और जाली टाइप की लाइट आ रही है और एक चौकोर टाइप की लाइट --